और टॉकीज में जैसे मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं वो है और यहां काउंटर है यहां पे जो की एक आदमी है खड़ा और उसके पा--